मैचिंग प्लाजा लिखा हुआ हैं।

जो गेट है वो ब्लैक का है सामने वाला जो गेट है और बरामदा भी है नीचे खंभे लगे हुए--

बस स्टैन्ड का फोटो है जहां पे बहुत सारी बसें रखी हुई है सामने ये जो बस हैं ये रेड कलर के दिखाई दे रही है जिसकी कुछ विंडो ओपन --